एक मैदान है जिसमें बच्चों के काफी सारे खेलने के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए है।

एक झूला है जिसमें एक लड़का खड़ा हुआ है और एक लड़की काफी और पेड़ काफी बड़े है और बाउंड्री दिखाई दे रही है।

एक मैदान है इसमे अपनी फोटो खिचवाते हुए दिखाई दे रहा है। वह फोटो खिचवा रहा है। चस्मा लगाए हुए है कुछ पेड़ दिखा रहे हैं।

कुछ तार है कुछ और आठ गाड़ी के पार्ट्स है जो दिखाई दे रहे है।

एक गेट है गेट में एक रोड बनी हुई है गेट तिरछा बना हुआ तिरछा सा बना हुआ है पार्क है पार्क में काफी सारे पेड़ बने हुए हैं।

गड़ा है। जिसको एक ये लोग मजदूर लोग खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक घास का मैदान है एक मशीन रखी हुई है। जिसमें तीन आदमी खड़े हुए हैं।

पत्थर है मिट्टी दिखाई दे रही है ऊपर पेड़ है गार्डन है और एक जे.बी.सी मशीन खड़ी हुई है।

रोड है रोड मे चार-पाँच गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं रोड के किनारे बाउंड्री मे कुछ न कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

पोत के वक ग्राउंड में रखा हुआ है बाउंड्री दिखाई दे रही है सोफे तीन सोफे हैं एक वन दो वन वन वाले हैं और काफी चमकदार दिखाई दे रहे हैं जो पेंट हुआ --

पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा एक बस खड़ी है जिसके टायर डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी रेन कोट पहने जाता हुआ दिखाई दे रहा एक कार --

जिसमे एक धान लगी हुई है ऊपर एक प-- पर्वत सा बना हुआ है और रोड दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है।

एक जाली है जाली में एक शेर दिखाई दे रहा है शेर की आंखें दिखाई दे रही है।

एक केक की का फ्रिज दिखाई दे रहा है उसमें स्ट्रॉबेरी केक रखा हुआ है एक पिंक केक रखा हुआ है।

एक घर मे गेट लगा है ऊपर पोर्च एरिया है ऊपर छत है छत मे रेलिंग लगी हुई है बाहर एक गेट लगा हुआ है उसके बाहर एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही--

एक बाउंड्री दिख एक बड़ा मल्टी दिखाई दे रही है जिसमें बाउंड्री दिखाई दे रही है एक खंभा दिखाई दे रहा है एक तार दिखाई दे रही है।